अह्ह् ये छोटा लड़का अपना शॉप का फोटो खिचवा रहा है और यहाँ पर अभी एक आदमी को गंजा किया हुवा है।